झीगें दिखाई दे रहे हैं इसमें बहोत सारे कांटे भी नजर आ रहे हैं।

हरे भरे पेड़ों से यह पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे नीचे दूर व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।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

नजर आ रहे हैं कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ अंधेरा नजर आ रहा है।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

इस चित्र में पटाखे जलते दिखाई दे रहे हैं।

लोग पटाखे चला रहे हैं अंधेरे में ये बहुत ही--

गधे दो गधे खड़े दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे काले और सफेद रंग के--

पीछे एक बाल भी पड़ी नजर आ रही है एक ऊंचा पत्थर दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं सामने बोहोत सारी बकरियां दिखाई दे रही हैं सफेद--

बहोत ही सुंदर जगह दिखाई दे रही है आस पास--

पीले हरे पत्तों से ये बहोत ही सुंदर लग रहा है।

बहुत सुंदर जगह दिखाई दे रही है पार्क जैसा लग रहा है।

कुछ व्यक्ति बाहर जाते नजर आ रहे है।

इस चित्र में एक कॉल सेंटर दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग बैठकर काम करते--

इस चित्र में एक कार्यालय दिखाई दे रहा है। बहोत ही बड़ा बहोत सारे लोग बाहर खड़े नजर आ रहे हैं।

बोहोत ही सुंदर- सुंदर दाना भी रखा हुआ है।